इस दृश्य के अंदर आरके के कॉफ़ी स्टॉल --

उनके सामने शेर बिठाया गया है जिसके गले में माला पहनाई हुई है।

कुछ व्यक्ति घूमते हुए नजर आ र --

हाथ मोड़ कर खड़ा है।

एक व्यक्ति साइकिल पर सवारी कर रहा है।

करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

जो कि लोहे से बना हुआ है।

सिखाए जा रहे हैं।